पिक्चर में हमें दुकान दिखाई दे रहा है।

सामने में स्कूटी तीन ठो नजर आ रहा है।

सामने में बहोत सारा क्रीम भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

और ऊपर में फ्लैग लटका के दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का सामने में बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

लोहा पोस्ट नजर आ रहा है मशीन का सामने में।

सीलिंग में बहुत सारा लाइट बॉक्स जलते हुए दिखाई दे रहा है।

बाल में सीन लटका के भी देख रहा है।

बोगा रंग का पर्दा नजर आ रहा है।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

टेबल में पानी बोतल और टिशू पेपर लोग दिखाई दे रहा है।

घर का अंदर में बहुत सारा फूल पॉट दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा जिम का सामान दिखाई दे रहा है इस त पिक्चर में हमें--

इस तस्वीर में हमें एक घर दिखाई दे रहा है।

इंसान का फेस ब्लर करके दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में हमें एक रूम दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा हैं इस पिक्चर में हमें।

पीछे में जीसस का मूर्ति दिखाई दे रहा है क्रॉस में लटका के--

पांडा का पिक्चर भी दिखाई दे रहा है साइड में।

गमला जसला में फूल भी नजर आ रहा है येलो कलर में।

बस के पीछे में वो दो को मिल रहा है।

नीचे में गमछा भी दिखाई दे रहा है।

नदी का किनारे में बहोत सारे इंसान दिखाई दे रहा है।

नदी का किनारा में बहुत सारा पोस्टर बना के दिखाई दे रहा है वॉल में।

सामने में कच्चा घर भी दिखाई दे रहा है पत्ता घर।

पिक्चर में हमें एक कमरा दिखाई दे रहा है।

ठेला भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

इस पिक्चर में हमें छत ढलाई करते हुए नजर आ रहा है।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

इलेक्ट्रिक रस्सी भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा इस तस्वीर में हमें।

घर का अंदर में बहुत सारा लाइट बल्ब जलते हुए दिखाई दे दे रहा है।

साइड में रस्ता भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

भी दिखाई दे रहा है।

साइड में लोहा भी देखने को मिल रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

एबी नजर आ रहा है मिट्टी में सामने में बहुत सारा इंसान नजर आ रहा है।

व्हीकल कार्ड दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

बॉक्स का अंदर में टेबलेट दवाई भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में हमे।

मिट्टी मे कारपेट दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

सामने में बहुत सारा चीज दिखाई दे रहा है खाने का।